कुछ दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

कपड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

मुझे इस फोटो में वाहन दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे खंबे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक कमरा दिखाई--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

मुझे इस फोटो में एक घोड़ा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में कुछ पुरुष दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो मेडिकल दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो मे अंगूर दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो मे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में मिकी माउस झूला दिखाई दे रहा हैं।